कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं।

कुछ लोग काम कर रहे हैं।

यह एक कैफे की फोटो है।

सामने से सीढ़ियां भी गई हैं।

यह एक स्पोर्ट रूम की तस्वीर है।

जहां संगीत की प्रैक्टिस हो रही है।

यहां कुछ फर्नीचर रखा हुआ है।

यहां कुछ नृत्यकी की तस्वीर है।

यह एक दुकान की तस्वीर है।

बाहर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यहां कुछ लोग कार्य कर रहे हैं।